यह एक सीन जिसपे अनेक प्रकार के --

अ यह एक नर्सरी है जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं।

यह एक दुकान है यह एक फूलों का दुकान है जिसपे अनेक प्रकार के फूल रखे हुए है पीला वाइट --

एक व्यक्ति रस्सी को खींच रहें --

घर का रंग व्हाइट एक घर का रंग पिंक और बाहर पे गाड़ी खड़ा हुआ है गेट का रंग ग्रीन --

और आसपास बहुत घास लगे हुए हैं और फूल फूला रेड कलर का है।

और घर का रंग पीला और बंधन पे है।

जो नीचे टाइल्स लगा हुआ ब्लैक कलर का है अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए है आस पास में और शोरूम कांच से ढका हुआ है।

यह एक रूम है जिसमें रो सोफा रखा हुआ है तकिया रखा हुआ है दीवाल का रंग भूरा कलर का है अनेक प्रकार की चीजें रखी हुईं हैं।

टेबल का रंग भूरा कलर का है और अनेक प्रकार की चीज भी रखें और रूम का रंग भूरा कलर का है।

यह एक नदियां है जिसपे ओवर ब्रिज बनाया हुआ है अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं।

और अनेक पेड़ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे भी है पास मे ऑटो डीआई स्कूटी ।

जिसके आस पास लोग अनके प्रकार के कार्य कर रहे है।

यह एक राशन सामान दुकान है जिसमें अनेक प्रकार के सामान रखे हुए हैं अनेक प्रकार के मसाले भी रखे हुए दाल वाल।